यह एक स्कूल का प्लेग्राउंड है।

यह एक इलेट्रेनिक शॉप है जिसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रिक सामान रखा हुआ है।

यह एक ए_टी_एम मशीन है जिसका नाम इंडियन वन ए_टी_एम रखा हुआ है।

यह फूलों की शॉप है जिसके अंदर बहुत सारे फूल सजे हुए रखे हैं।

इनमें कुछ रोज कुुछ सनफ्लावर और कुछ अलग प्रकार के कलर फुल है।

और इनमें कुछ लड़के है और कुछ लड़कियां है जो कि किताब पढ़ रहे है।

यह एक सहारनपुर का रेलवे स्टेशन है।

और उन्होंने दो बड़े बड़े लाइट के खंभे भी लगवा रखे हैं और उनके पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ है।

तथा ये बैटरी के डब्बों में पैक है जिसका नाम लुमिनस है।

और इसके अंदर बहुत सारी साड़िया रखी हुई हैं और इसमें साड़िया ब्लू ग्रीन येलो रेड और व्हाइट कलर की रखी हुई हैं।

साइड में कुछ चांदी के अवतार भी बना रखी है।

और पीछे एक वाइट और ब्लैक कलर का पर्दा भी लगा रखा है।

और इस बस पर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश परिवहन और साइड में एक खाने पीने की दुकान भी लगी हुई है।

और फूलों के बीच में एक गिटार रखा हुआ है।

यह एक वेडिंग हॉल है जिसे बहुत अच्छा सजाया गया हुआ है।

और इसके सामने एक फोल्डिंग भी पड़ा हुआ है।

इसके सामने दो लड़के खड़े हुए है और बहुत सारे क बाइक खड़ी हुई है।

इस स्कूल का फ्रंट कांच से बना हुआ है।

यह एक एक्सरसाइज मशीन है।

और उनके आसपास बहुत सारा कूड़ा कचरा भी पड़ा हुआ है।

यह एक पेट्रोल पंप है जिसका नाम इंडियन ऑयल है।

यहां पर कुछ व्यक्ति अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं।

छत पर बहुत सारे पंखे लगे हुए हैं।

जिसने इन्होंने सब ने अपने सिर पर कैप लगा रखी है तथा पिछे के साइड में दो बहुत बड़े बड़े पेड़ है।